डेली दो तीन सौ आदमी --

यह एक दुकान है यहाँ राशन के --

लाइब्रेरी है । इसके चारो ओर बुक रखा गया है ।

यह न्यू कंप्यूटर रूम है। इसके चारो और सजाया गया है। इसका उद्घाटन हुआ है।